बहुत सारे लड़की और आदमी आए भी नहीं।

यह एक कोचिंग सेंटर है। यह कोचिंग सेंटर बहुत ही बड़ा है।

यह एक कपड़े की दुकान है इस पुतली को एक फ्रॉक --

यह एक चर्च है। यह चर्च में बोहोत सारे ईसाई धर्म के लोग--

मस्त रहता है योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदे मंद है ।

यहाँ पे घूमने-फिरने के लिए आया है यह जगह बहुत ही सुन्दर --

और ये लोग सभी डांस कर रहे है।

हरिहर दास उच्च विद्यालय प्लस टू है।

घना है। बहुत सारे लोग --

तालाब के साइड में एक पहाड़ है।

होटल में बहुत सारे लोग --

आते हैं होटल को बुक करते हैं।